यह बाइसाईकिल है छोटे बच्चों की और पास में बड़ी साइकिल भी खड़ रखी हुई है।

दिवार भी काफी सुन्दर तरीके से पेंट की गयी है।

उ तालाब के उस तरफ बहोत सुंदर पेड़ पौधे हैं बहोत ही सुंदर हैं।

छोटा सा टापू भी दिख रहा है जहा पर अ हरियाली दिखाई दे रही है ।

बहुत ही सुन्दर और खुबसूरत युवा है ।

और यहा पर अच्छा रंग मंच बना हुआ है ।

व्यक्ति इसको पूल को पार करने करने की कोशिश कर रहे है धन्यवाद ।

अननन टाइगर कंपनी की दोनों सिलाई मशीनस है।

जो भी पानी को निहार रहा है ।

और वाच की जो पिक्चर बनी हुई है ।

यहा पर गेहू को आटे के रूप में बदला जाता है ।

ये एक शॉप का नक्शा बताया जा रहा है जहा पर स्पोर्ट्स की कुछ--

वस्तुए पड़ी हुई है जेसी भी --

फीट वगेरह भी है कम्पलीट सॉक्स वगेरह भी है जुराबे बूट ड्रेस --

लोहे के हर सामान के वेल्डिंग की जाती है ।

और बहोत ही सुन्दर व्यू दिखाया गया है रात्रि का --

यहा पर शूटिंग सामान दिखाया गया है कैमरा लाइटिंग --

और बहोत ही सुन्दर व्यू है लेईट्रिंग की पूरी प्रबन्द है ।

सर्दी गर्मी के पहने वाले कपड़े मिलते हैं और बहुत ही लाइटिंग लगी हुई है बहुत ही अच्छा शोरूम बनाया गया है।

शॉप का में दिखाया गया है जहा पर --

इसमें हमारे खाने की भी पूरी सुविधा होगी --

किस किसको ट्रिपल बिल्डिंग स्कूल की विडियो दिखाई गयी है।

उची स्माइलिंग की जाती करवा रहे है ।

अच्छे से दिखाया गया है की बच्चे है ।

जिस किसी को ब्रांड भी चाहिए होगा वो यहा से आके --

यहा पर कुछ रखे हुए है जाने के लिए प्रयोग किये जाते है ।

यहा हर गोदामस के अन्दर पाए जाते है ।

मकान बना रहे है जिसके ऊपर की लेंटर डाल रहे है ।

निचे की तरफ खाली जगह भी रखी हुई है ।

शो दिखाने के लिए भी हमारे पास एसी क्वालिटी है ।

एरिया है जहा पर एक गाड़ी खड़ी है।

पेटिस वगेरा कुछ खाने की वस्रतुए रखी हुई है।

काउंटर के पीछे कुछ अः गिलास टाइप रखा हुआ है।

कलर डिज़ाइन की कप है जो यहा पे टंगे हुए है ।

छोटे भी कप पीछे है ब्राउन कलर के बहुत सुंदर--

जो की तार से अलग जेन स अटैच की हुई है।

एन इनके फर्श पे कुछ गुब्बारे पड़े हुए हैं ऊपर भी गुब्बारे हैं।

परा का वो है उसके अन्दर वाटर फॉर हो रहा है।

बन मुसलमान खड़े हुए हैं तीन बैठे हुए हैं।

और पीछे दिवार पर कुछ लिखा हुआ है।

दो बने हुए है एक में दो गुड़िया नारे लड़के नहा रही है।

जिसके अंदर लाइटींग लगी हुई है साइडों में दो दो पंखे लगे हुए हैं।

यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है इसके अंदर नाव है।

यहाँ पर भी आवाज़ दिखाई दे रहा है।

विशे उपाज भी लिखा हुआ है बीके डी वी ग्रोनिंग --

और सामने ऊपर तीन टेशबोर्ड टंगे हुए है सामने एक पिकउप खड़ी है।

उसके प्रेस के नीचे शर्ट है जो शर्ट के अम्म --

वर्तालब हुआ उसके जंगल लगा हुआ है।

एक में सिन्धी मूत्रा ली हुई है।

एक के पास यह पता पड़ा हुआ है यहाँ पर तकिये रखे हुए है सोने के लिए।

दोनों तरफ टेबल है टेबल पेन गुलदस्ते रखा हुए है।

और नीचे रेम भी है खाना पीना खाने के लिए--

और फर्श पर रेन करे नीचे गदे लगे हुए है।

और झरने उसके पीछे निचे--

साइड में छोटे बच्चो के बेल्ट बड़ो के बेल्ट दिखाई गयी है।